उसमें छोटी-छोटी भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं।

कुछ मजदूर उसे उठा कर ला रहे हैं। कुछ मजदूर खड़े हुए हैं।

पीछे उसके काफी सारे पत्थर बिखरे पड़े हुए हैं।

किनारे टमाटर मूली गाजर भी हैं। बोरो में भी सब्जियां रखी हैं। यहाँ पर --

कुर्ता टंगा हुआ है। ऊपर लाइटस जल रही हैं। जमीन बिल्कुल साफ --

यह एक सुनसान सड़क है। यह सड़क मिट्टी की है। यहाँ पर दूर-दूर एक घर है।